यहाँ पर बहुत सारी साइकिलस रखी हुई हैं स्कूटर रखी हुई है।

यहाँ से यहाँ पर रेल की पटलिया और यहाँ से रेल एती है और रेल की पटलिया ऊपर बहुत सारी --

यह एक गाय है। गाय का कलर व्हाइट और ब्लैक है और गराए बहुत अच्छी दिख रही है बहुत साफ सुथरी दिख रही है।